इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ घर दिखाई दे रहें हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक चर्च दिखाई दे रहा है।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

यहां मुझे कुछ पुरुष दिखाई दे रहे है।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

इस तस्वीर मे मुझे कुछ दुकान दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे एक बाउंड्री दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर मे मुझे एक रोड दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ सीढियां दिखाई दे रही है।